मुझे इस फोटो में बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

एक मोड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं।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

मुझे इस फोटो में एक गुफा दिखाई दे रही है।

मुझे फोटो में कुछ लोग दिखाई दे--

कुछ लोग दिखाई दे रहे है।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

एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं।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

एक दुकान दिखाई दे रही है।